सामने एक ऑफिस दिखाई दे रा है ऑफिस बहोत ही बड़ा दिखाई दे रा है यहां पर बहोत सारी लाइटिंग भी दिखाई दे रही है यहां पर बहुत सारे पोस्टर लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

यहा पर चेयर भी रखी हुई दिखाइए दे रही है यहां पर बहुत सारी बिजली की तारे भी दिखाई दे रही हैं।